सब चीज का पेड़ है और सामने पहाड़ है वहाँ पहाड़ पे से झरना भी गिरता है।

ये एक बहुत ही प्यारा जगह है यहाँ बहुत हरियाली है और एक बहुत ऊंचा पहाड़ है वहाँ से पानी गिर रहा है। .

और यहां पर नीचे नहा रहे है यहां पे कमल का फूल भी उगता है।

और साइड में इतना कचरा है की पूछो मत |